यह एक मकान का दृश्य है मकान अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है उसमें प्लस्तर भी नहीं है।

बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी ग्राउंड है ग्राउंड में नीचे घास जमा हुआ है।

दुकान में ढेर सारी कारपेट फोल्ड कर कर रखा हुआ है।

यहां ढेर सारी टेबल चेयर है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे महिला पुरुष का भीड़ जमा हुआ है।

स्टेज पे एक बड़ी सी कुर्सी भी है वह लाल कलर की है।

दुकान के अलमीरा में बहोत सारे वस्तु नजर आ रहे हैं।